टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर फूलदान रखा है।

रिक्शे ऑटो चलते हुए दिखाई दे रही है।

और एक आदमी उनकी पूजा कर रहा है।

एक ग्रीन टीन शीट का शेड भी बना हुआ है।